पहाड़ है जहाँ पर छोटे-छोटे पत्थर पड़े हुए है पेड़ भी है आजू-बाजू।

खेत दिख रहा हैवहां पर हरा-भरा है कुछ पेड़ लगे हुए हैं छोटे-छोटे फूलों के और कुछ पेड बड़े-बड़े दिख रहे हैं।

और ये येलो कलर से लाल कलर से पोता हुआ है और सफ़ेद --

ऊपर बादल दिख रहा है नीला-नीला सा और बहुत सारी जगह पर ये --

रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर मोर बनी हुई है वो फूलों की बनी हुई है गेट लग रहा है परदे टंगे हुए है ऊपर नीला बादल दिख रहा है नीचे फर्श बिछा हुआ है हरे कलर का पेड़ दिख रहे है।

जगह है वहा पर पोस्टर लग रहा है ऊपर तार लग रहे है रसिया जा रही है वहा पर बहुत सारे जेंट्स खड़े हुए है।